यहां पे एक टेबल दिख रहा है।

जहां पे दाहिने कोने वाले औरत ने नीले रंग की कुर्ती पहनी हुई है।

यहां पर आसमान में बादल छाया हुआ है।

यहां पर दाहिने कोने में एक कंप्यूटर दिख रहा है।